और भी करके एक ओपन गेट है।

मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक पेट्रोल पंप है जो कि--

ग्रीन कलर पर्पल कलर व्हाइट कलर और भी कई प्रकार्स के कलर हैं यह देखने में अति सुंदर प्रतीत हो रहा है मुझे।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां घर बनाया जा रहा है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं या एक भवन दिख रहा है मुझे।

इसलिए घर भी होटल है इसी के साथ में एक--

जैसा कि मैं देख सकता हूं यह एक रूम है।

मीटिंग ले रहे हैं इस मीटिंग में लेक्चरर सभी बच्चों को समझा रहे हैं यहां पर एक टेबल है।

शॉल और ग्रीन कलर की साड़ी रखी हुई है।

दिखाई दे रहा है यहां पर एक टेबल रखा हुई है।

जैसे कि मैं देख रहा हूं यह एक बिल्डिंग है।

अच्छा प्रतीत दिखाई दे रहा है या दृश्य देखने में--

बोर्ड रखे हुए हैं इस पे लिखा हुआ है द कंफॉर्मेशन--

यहां पर मुझे दो आइसक्रीम फ्रिज फ्रीजर देख रहे हैं इन आइस क्रीमों में काफी स्वाद होता है।

जो भी खाने से बहुत ही अच्छी

इस रिक्शे के पीछे एक गाड़ी है इसके ऊपर एक छत है इस छत में कई सारी लाइट लगी हुई हैं उसी के सामने एक--

यहां पर दो पानी की टंकी है यहां पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं यह ऊपर से खींचा हुआ फूटेज है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यह एक नर्सरी है जिसमें साईं बाबा की फोटो लगी हुई है।

इस नर्सरी में राजकुमार कुजपा का नंबर लिखा हुआ है यह एक भोपाल की नर्सरी है यहां का नंबर ऐट ऐंठ थ्री नाइन सिक्स टू सिक्स --